एक लड़के ने लाल कपडा पहन रखा है एक काला पेण्ट पहन रखी है एक लड़की ने लाल सूट पहन रखी है यह पर पेड़ है मस्त मौसम हुआ है।

अड़ सीढ़ी है बंग ऊपर आदमी चढने लाग रा दो और एक मंदिर है बोलो सो विसाल सो बढ़िया पुरानो और अठे बहुत सारा पेड़ है।